ये इअ ये देखिए मुझे यहाँ पर स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा यहाँ पर येलो कलर का मुझे छत दिखाई दे रही यहाँ पर मुझे पाइप दिखाई दे रहा यहाँ पर मुझे बच्चे दिखाई दे रहें स्विमिंग पूल में यहाँ पर मुझे फिसलनी भी दिखाई दे रही है | यहां पर मुझे रखे हुए गमले दिखाई दे रहे हैं |

ये देखिए मुझे यहाँ पर रेड और वाइट कलर का एक फूल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे पत्ती दिखाई दे रही हैं। साइड में भी एक पेड़ दिखाई दे रहा है। उसकी लंबी-लंबी पत्ती हैं।